और ये पीछे जनरेटर रखा हुआ है इससे हमारे घर की लाइट चलती है पूरे घर की एकदम अच्छा है।

काफी भीड़ रहती है और यहाँ ऐसा है ना पैसे मिलते आ मिल ही जाते हैं। कोई से ए.टी.एम. में नहीं होंगे तो स्टेट बैंक के --

और ये जंगल देखो जंगली इलाका इसमें कितना डरावनापन है। यहाँ लोग बाग बोहत कम जाते हैं।

यहां कार बार पार्किंग करने के लिए भी काफी बहुत बड़ा स्पेस है।

और यहाँ पे मतलब कि जो अस्थियाँ बहाते हैं कोई मतलब कि मर जाता है तो उसकी अस्थि बहा रहे हैं।

और इसलिए तो बोहोत प्यारा लगता है और ये जब पंख फैराता है तो बोहोत बड़े हो जाते हैं इसके पंख।

वैकेंसी आई भी हैं तो जी.डी. की बुक लेनी है कोई यू.पी. पुलिस की मतलब कि अच्छी सी जिससे हमारी तैयारी हो सके और कुछ पेन --

और यहां सुबह सुबह कितनी अच्छी-अच्छी --

और ये बोहोत अच्छा लगा। यहाँ पे बोहोत सारे लोग बाग हैं बच्चे भी हैं जो झण्डा फहराने में शामिल हु --

और हां ब्यूटी पार्लर है और यहां बहुत लेडी से सजाई जाती हैं।

कोई दोलन-बुलन आती है तो यहां बहुत अच्छे से जाती हैं उसको --

देखिए कितनी अच्छी बीमारी है इसे कितनी बुरी है।